इस तस्वीर में मुझे कुछ सब्जियां दिखाई दे रही हैं।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

इस तस्वीर में मुझे कुछ दुकान दि--

यहां मुझे दो मीटर दिखाई दे--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

यहां मुझे कुछ कैरम दिखाई दे रहे हैं।